इस चित्र में एक पूल सेट नज़र आ रहा है यहाँ एक लड़का खेलता हुआ नज़र आ रहा है।

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है यहां एक जीप कुछ बाइक खड़ी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा खेत नजर आ रहा है।

यहां दो बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बड़ा रोड दिखाई दे रहा है यहां कुछ कार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है यहां कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है यहां कुछ इंसान भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यहाँ फिसल पट्टी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ एक अच्छा रास्ता भी दिख रहा है।

इस चित्र में एक आदमी दिखाई दिख रहा है यहाँ एक बड़ा पेड़ भी दिखाई दिख रहा है।